ये तीन मंजिल की बिल्डिंग के नीचे वाला भाग जो हैं बिलकुल दुकान का भाग दिखाई दे रहा हैं मार्किट का भाग दिखाई दे रहा हैं।

पाटली पुत्र गेस्ट हाउस --

किसी टूरिस्ट प्लेस का ये एक द्श्य दिखाई दे रहा हैं।

ईसाइयो का पवित्र चिन्ह जो प्लस होता हैं उसका एक फिगर भी बनाया गया हैं।

और यहाँ पे एक तालाबनुमा खिड़की बनी हुई हैं और उस तालाब में काफी सारे कछुए--

एक काफी बड़ी नदी घाटी परियोजना दिखाई दे रही हैं।

चक्का वाला जो चप्पल जो होता हैं उसको चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं मानो ये राइडिंग करने का--

रेस लगा हुआ हैं कौन आगे निकलता हैं इसी की होड़ लगी हुई हैं।

और यह प्लैट फॉर्म जो हैं बिल्कुल खुली खुली अवस्था में दिखाई दे रही हैं।

और यह घूमने फिरने का जगह बिल्कुल विरान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

कोई मल्टी मीडिया का ऑफिस दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर--

वाइट रंग का और ग्रीन रंग का लगा हुआ हैं मानो यह ब्रेकफ़ास्ट बनाया गया हो।

किफी म काफी बड़े रेस्टोरेंट का यह एक द्रश्य दिखाई दे रहा हैं।

द्रश्य दिखाई दे रहा हैं जिसमे में एक काउंटर बना हुआ हैं काउन्टर से सटे हुए एक टेबल और कुर्सी भी लगे हुए हैं।

काला और पीले रंग का दिखाई दे रहा हैं जो बिल्कुल सुंदर आकृति में दिखाई दे रहा हैं।

ऐसा लिखा हुआ एक बोर्ड टंगा हुआ हैं जो बस्तर छत्तीसगढ़ का--

इलेक्शन का माहौल चल रहा हैं वोट मारने का कार्यक्रम चल रहा हैं।

आई लव पटना भारत पेट्रोलियम ऐसा लिखा हुआ हैं एक बोर्ड टंगा हुआ हैं।

बॉडी बिल्डिंग जिम का यह एक द्रश्य दिखाई दे रहा हैं।

गद्दे पर एक व्यक्ति लेटा हुआ हैं और उसके एक पैर उठाकर दिखा रहा हैं अपना फोटो --

और बाहर में एक स्पीकिंग काउंटर भी बना हुआ हैं।

ऐसा लिखा हुआ हैं की बाहर में बोर्ड लगा हुआ हैं और ये होटल के बाहर में कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं ।

शाकाहारी मांसाहारी दोनों का यहाँ पर उचित प्रबंध किया गया हैं।

किसी डॉक्टर का ये एक टेबल हो हो और उसके सामने ढेर सारी दवाईयाँ भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं और यह डॉक्टर पर्ची पर कुछ लिखता हुआ दिखाई दे रहा हैं।